यह फ्लोर इस पर कुछ सर्कल्स बने हुए हैं।

सामने एक ईंटों वाली दीवार है।

यह एक हॉल की पिक्चर हैं हॉल को बहोत सुंदर डेकोरेट किया गया हैं।

उन चारों साड़ियों का कलर नीला गुलाबी हरा और लाल है यह बहोत सुंदर लग रही हैं और ये--

उसके सामने एक आदमी है जिसने नीला कोट पहना हुआ है।

इसमें कुछ ट्रैक्स बने हुए हैं।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

इस रोड पर गनेश जी की कुछ--

इसके अंदर एक बहुत बड़ा टेबल है।

कुछ लड़कों ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है एक लड़के ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है।

एक दीवार पर पांच फ्रेमस हैं।

कुछ आदमी हैं और कुछ औरतें हैं।

इसमें पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक डी_जे वाला आदमी खड़ा है।

इसमें कई पौधे बहोत सुंदर दिखाई दे रहे है।

वेहे आदमी अपना काम कर रहा है उसके पास कुछ कागज हैं।